जैसा दिखाई दे रहा है और इस रूम में बहुत सारॆ बच्चों के बैठने के लिए बेंच बनाये गये हैं ।

और जो व्यक्ति नया गाड़ी ख़रीदना चाहता वो यहाँ आता है और अपना मन पसंदीदा गाड़ी यहाँ से खरीदता है बहुत अच्छा शो रूम है साफ सुथरा--

यहाँ एक व्यक्ति भी खड़ा हुआ है जो शायद यहाँ घूमने के लिए आया होगा।

यहाँ एक पोस्टर दिखाई दे रहा है जिसमें लिखा हुआ है श्री लक्ष्मी पूजा एवं जनरल स्टोर

बोर्ड में लिखा हुआ मिल रहा है और यहाँ ठेले में कुछ फल कोई इंसान बेच रहा है और लोग इधर-उधर अपने रिक्शा बाइक साइकिल से आना -जाना कर रहे हैं।